यह एक बोहोत ही अच्छा और सुन्दर सा फिगर दिखाया गया है जो कि दिखने में काफ़ी सुन्दर और मस्त --

बहुत ही सुन्दर सा फोटो दिखाया गया है जो कि दिखने में काफी सुन्दर और मस्त हैं। यह फोटो में बहुत सारे --

यह एक बहुत ही सुन्दर और अच्छा सा फोटो कोई घर का दिखाया गया है जोकि छत यहाँ पे ढल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही मजदूर लगे हुए हैं।

यह एक बहुत ही अच्छा और सुन्दर सा हमें नाव का फ़ोटो दिखाया गया है जो कि यह नाव पानी में तैर रही है और यहाँ पे दो आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक बहोत ही अच्छा और सुन्दर-सा कोई पोखरा का फोटो दिखाया गया है जो कि पोखरा में बहोत अच्छे और सुन्दर से पानी है।